फूल बेचने वाला है जहां पे बोहोत सारे बोहोत तरह के बहुत अच्छे-अच्छे फूल हैं और यह फूल बेचने के काम कर रहे है और ये बहुत अच्छे जगह एक मेले में या तो एक अच्छे से मार्केट में हैं और ये बोहोत सारे बोहोत अच्छे से फूल हैं ।

है जोकि ट्रेक्टर यहाँ पर बोहोत सारे पत्थर गिराए हुए हैं घर बनाने के लिए। इटे की जोड़ाई की गयी है और इस जगह पर बोहोत सारे इटे गिराए गए हैं जोकि घर बनाने के लिए हैं और इस जगह पे बोहोत ही जल्द घर बन जायेगा।

यहाँ पे बहुत बड़ी-बड़ी मछलिया है । जो की बहुत अच्छी दिख रहे और बहुत तरह की मछलिया बेची जा रही है । यहाँ पर बहुत से सारे हैं और ये अच्छे से यहाँ पर मछलियों को सफाई करके अच्छी तरह से यहाँ पर बेचने के काम करते हैं जो कि अच्छी तरह से इस तस्वीर में दिख रही है ।

डोसा के साथ में अच्छी सी चटनी है और ये दुकान की अच्छी सी एक सप्लाई दिख रही है।